डाकघर के बाहर की तस्वीर है। डाकघर के अंदर एक आदमी खड़ा है। बाहर औरतें बैठी हैं। बाहर डाक घर हरे रंग का है। बाहर एक लेटर बॉक्स टंगा हुआ है लाल रंग का। ऊपर बोर्ड लगा हुआ है। पोस्ट ऑफिस --

साम सामने ही एक आदमी खड़ा हुआ है जिससे लाल रंग की टी-शर्ट और नीले रंग की शॉर्ट्स पेहने हुए हैं।